चिप्स चॉकलेट और भी बहुत सी चीजे मिलती हुई दिखाई दे रही है| यहां पर हमें कुछ पोस्टर लगे हुए नजर आ रहे हैं।

एक डैम का हैं जहाँ से पानी बहुत ही तेजी से बेह रहा है हमे यहाँ पर ऊपर में कुछ गाड़ियां चलती हुई भी दिखाई दे रहीं हैं आस-पास हम यहाँ पर पेड़-पौधे भी देख पा रहें हैं।

चर्च में हमें एक शादी का मेन गेट दिखाइ दे रहा है जो की बहुत ही सुन्दर तरीके से सजाया गया है ऊपर पर फूलो से इसका साज- सजावट किया गया है।

इस दृश्य में हम एक पंडाल देख पा रहे हैं जहां हमें दुर्गा माता की मूर्ति दिखाई दे रही है| मूर्ति देखने में काफी सुंदर लग रही है| वहीं यहां पे हमें बहुत से लोग दिखाई दे रहे हैं।

रात के इस दृश्य में हमें दुर्गा माता की मूर्ति दिखाई दे रही है मूर्ति बहुत ही सुंदर तरीके से बनाई गई है।

दृश्य एक मंदिर का है जहां हमें कुछ लोग पूजा करते दिखाई दे रहे हैं।

दृश्य में हमें एक पेड़ के नीचे मंदिर बनी हुई दिखाई दे रही है जो की बहुत ही सुंदर तरीके से बनाई गई है| यहाँ पर छोटे-छोटे दीये भी जलाए गए हैं।

हम यहाँ पर कुछ लोगों को पूजा करते हुए भी देख पा रहे हैं| आस-पास हमें धुआं भी नजर आ रहा है।

यहां पर कुछ पेड़ भी लगे हुए हैं| वहीं खेतों के आर-पार हम कुछ घर भी बने हुए देख पा रहे हैं| देखने में यह दृश्य अच्छा लग रहा है।

यहाँ पर हमें कुछ पोस्टर चिपकाए हुए भी दिखाई दे रहे हैं| देखने में यह दृश्य अच्छा लग रहा है।

यहाँ पर फ़्लाइटिंग की फैसिलिटी भी काफी अच्छी लग रही है| ऊपर हमें एक नेम प्लेट भी दिखाई दे रहा है| देखने में यह जिम काफी अच्छा लग रहा है।

काठ की दुकान का है जहां हमें बेड बना हुआ दिखाई दे रहा है| यहां पर हम फर्नीचर अलग-अलग प्रकार का देख पा रहे हैं और ऊपर की ओर--

होटल का है जो की देखने में काफी बड़ा और काफी सुन्दर है इसकी खिड़कियाँ भी देखने में काफी अच्छी लग रही हैं।

में एक दुकान देखने को मिल रहा है यह दुकान एक मशीन बनाने वाली दुकान है यहां पर हमे एक आदमी हमें बड़ा मशीन बनाते हुए भी दिखाई दे रहा हैं।

दृश्य एक मैदान का है जहाँ पर हमें हरे-भरे खेत देखने को मिल रहे हैं वही हम दूर की और एक रास्ता भी देख पा रहे हैं रास्ते पर हमें एक जाती हुई गाड़ी भी दिखाई दे रही है।